और लेफ्ट में बैनर लगा हुआ है उसके बाद एक बैनर और एक लड़का खड़ा हुआ है और पीछे पर्दे लगे हुए है और पीछे काफी सारी मशीने है|

ये एक देखने टेबुल पड़ी है उसपे नीले कलर का कारपेट बिछा हुआ है और रेड कलर के छोटे-छोटे बॉक्सेस बनाये गए है|

ठीक है आपके सामने काफी बड़ा ये दिख रहा है और यहाँ पे राइट साइड एक काफी घास वाला मैदान बनाया गया है और उसके बीच में एक काफी ऊंचा लंबा शाह और इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। नीचे पेड़ लगे हुए हैं और पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ पर बाउंड्री रैंक और ब्लैक कलर येलो कलर में पहनी हुई है।

साइकिल दिख रही है सामने काफी बड़ा पहाड़ दिख रहा है राइट साइक पानी भरा हुआ पूरा और एक छोटा पहाड़ दिख रहा है।